एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शन सफेद शब्दो में कुछ लिखा हुआ है।

बच्चों की छोटी-छोटी साइकिल और छोटी कार रखी हुई है और उसमें लाइट लगी हुई--

और बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है जिन पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

चेयर रखी हुई है लाल कलर की और भी वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं लाइटिंग लगी हुई है।

एक खेत है जिसमें हरी घास है और एक हिरनी खड़ी हुई है।